ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है। और यह इस स्कूल बहुत बड़ा है। यह इस स्कूल में बहुत अच्छी पढाई होते है। बहुत सारे विधार्थी यह इस स्कूल में पढ़ते है।

दाढ़ी बनवाने के लिए और बोहोत सारे आदमी लोग आते है फेसिअल करवाने के लिए। यहाँ पे बोहोत अच्छे केश काटते --

आदमी लोग जाते है जिम करने। जिम करने से हमारे शरीर में बॉडी बनता है और शरीर बोहोत स्वस्थ रहते है शरीर बहुत फुर्ती रहते है। जिम में तरह-तरह के मशीन रह --

इस शलगम को लगाने में बहुत ही मेहनत लगता है और यह शलगम को खेत में उगाए जाते हैं से किसान लोग खेती करते --